यह एक सामने एक स्विमिंग पूल बना हुआ है और जिसपे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे पाइप भी लगा हुआ है और सामने कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है और यहाँ पर--

यहां पे सामने बहुत सारे गमले रखे हुए है ओर उनमे फूल लगे हुए है ओर इनमे व्हाइट कलर के फूल है पिंक कलर के फूल है येलो कलर के फूल है ओर--

दे रहे है और यहां के सामने सामने से रोड भी बना हुआ है यहा के साइड मे एक घर भी बना हुआ है।

और यहाँ पे पेड़ भी लगे हुये है बहोत सारे और यहाँ पे निचे मिटटी है और ऊपर दिख रहे है। जो कि स्काई कलर दिख रहा है

यह के सामने एक बाइक खड़ी हुयी है जिसका कलर ब्लैक है और यहा से रोड भी गया हुआ है और यहा सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका कलर --

यहाँ के सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ के सामने गेट लगी हुए है और उप्पर दो बॉलकनी लगे हुए है और यहाँ के सामने से--

और यहा पर सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे है और यहाँ पे कुछ बैठे हुए है और यहाँ से पेड़ भि दिख रहा है और यहाँ पे कुछ घर बी बने हुए है और सामने आसमान--

यहाँ पे सामने एक मंदिर सा बना हुआ है जिसमे वाइट कलर है और यहाँ के सामने माचिस रखी हुई है।

घर के सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें डार्क कलर का प्रिंट किया हुआ है सामने बालकनी जहां पे खड़े हो सकते है और यहाँ पे सामने गेट लगे हुए हैं।